इस तस्वीर में हमें एक रास्ता देखने को मिल रहा है रास्ते के ऊपर एक ट्रक जा रहा है ट्रक के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं अगल-बगल बहुत सारी मोटरसाइकिले खड़ी हुई नजर आ रही है।

बिल्डिंग का रंग येल्लो और ऑरेंज कलर का है नीचे बिल्डिंग का रंग सफेद कलर है सामने बहुत सारे रेत रखे हुए नजर आ रहे है बिल्डिंग के किनारे पर एक पतझड़ पेड़ देखने को मिल रहा है।

यहाँ पर एक लाइट देखने को भी हमें मिल रही है। मस्जिद के बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है एक पानी की टंकी ब्लैक कलर की है दूसरी वाइट --

तस्वीर में हमें एक मस्जिद देखने को मिल रही हैं मस्जिद के बिल्डिंग का रंग वाइट ग्रीन और गोल्डन कलर का है यह मस्जिद देखने में बहुत खुबसूरत है मस्जिद के पीछे बहुत सारे पेड़ की पत्तियां नजर आ रही है यह पत्तियां ग्रीन कलर की है।

तस्वीर में हमें एक बेहद हीं खूबसूरत हॉल देखने को मिल रहा है यह हॉल में बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है कुछ ऑरेंज कलर की कुछ पिंक कलर की इसके सामने तीन गेट है गेट पर बहुत सारे पर्दे लगे हुए है।

फिर में हमें एक बस स्टैंड देखने को मिल रहा है जिसमे बहुत सारी बस खड़ी हुई है एक बस के रंग सफ़ेद है दूसरे बस का रंग नीला है फिर पीछे एक बस है जिसका रंग सफ़ेद है।

सामने हमें एक वाइट रंग की सीढ़ी नजर आ रही है। इस सीढ़ी पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए नजर आ रहे है।